वहा बहुत सारे प्रोडक्टस दिख रहे है वहा पे बियर्ड ट्रीमर मशीन भी है जिससे बियर्ड को ट्रीम किया जाता है।

यहाँ एक ऑटो का क्लोज़अप फोटो है उस ऑटो मे कुछ ब्रह्मा लपक करके कुच्छ लिखा हुआ है। ऑटो पे बाजू मे मिरर लगा हुआ है।

ये एक जगह है कमरा है जिसके अंदर बहुत सारे सर्टिफ़िकेटस टगे हुए है एक सोफा जैसे चेअर है उसके उपर--

कोई सफ़ेद पीला और काला कलर का कार भी खड़े है दो बच्चे भी दिख रहे है जो शायद इस्कूल जा रहे है इस बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ है लोकमान्य मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड उसके आगे लिखा है तरुण भारत--

शॉप है जिसका नाम है लूक मॅन बियर्ड हेयर टैटू --

कम्पास बॉक्स मे भी बहुत सारे चिजे रहती है डिवायडर पेंसिल सार्पणर इरेज़र ये सब चीजे कम्पास बॉक्स मे रहती है ये एक बूक शॉप है जहा काफी पेन पुस्तक जैसी चिजे मिलती होंगी।